एक ग्राउंड है। बोहोत बड़ा सा ग्राउंड है। साइड में एक घर भी है जिसमें बोहोत सारा पेड़ है बड़ा-बड़ा और छोटा-छोटा पौधा भी है ।

और बहुत ही अच्छा कपड़ा का क्वालिटी रहता हैं बहुत ही अच्छे रेंज में मिल जाता हैं।